एक आदमी बस के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं और एक आदमी बस से उतरा हुआ हैं कुछ लोग घूम रहे हैं।

दो लोग बाहर खड़े हुए हैं कुछ बातें कर रहे हैं बैंक के बाजु में एक ए.टी.एम. है और एक दुकान भी हैं उसके ऊपर घर भी है।

सामने दो दो गाड़ियां रखी है उसके बाजू में एक होटल और सामने से एक बूढ़ा आदमी छाता ले के निकल रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है जोकी सफेद कलर का है।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है व्हाइट कलर का एक लेडीज है उसने मास्क भी लगाया हुआ हैं।

ये एक मंदिर है मंदिर में चैनल गेट लगा हुआ है गेट अ- लाल कलर का है। और--

ये एक जिम का हाल हैं दिवाले ग्रे और व्हाइट कलर की हैं और एक पंचिंग बैग लटका हुआ है।

यह एक संसथान है इसके दीवारों पर आ सफ़ेद हरा सफ़ेद हरा और काला कलर पोथा हुआ है

पुरा बड़ा हाल है जिसमें लोग आकर एक्सरसाइज करते है।

कांच का दरवाज़ा है और सामने गमले रखे हुए है जिसपे बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए है हरे कलर के और उसकी ज़मीन ग्रे और ब्राउन कलर की--